बहुत सारा फूल ऊल बिक रहा हैं आदमी सब बहुत सारा है।

और वहां पर बहुत सारा वृक्ष लोक रहा है।

कुछ होटल में कोई चीज का व्यवस्था हो रहा है खान पीयन का यही लग रहा।

उसपर सत्तु भी रखा हुआ है दो आदमी भी खड़ा है कुछ-कुछ बना --